यहां पर कुछ छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए हैं जो कलर में हैं।

यह चित्र किसी फैक्ट्री का नजर आ रहा है।

और कुछ हवलदार नजर आ रहे हैं।

यह जे_सी_बी धरती की खुदाई कर रही है।

एक आदमी के हाथ में सफेद कलर का कागज है।

और एक सामने चेयर और टेबल रखी हुई है।

यह चित्र किसी रेलवे ट्रैक का है यहां पर एक रेल की पटरी नजर आ रही है।

यह चित्र किसी शोरूम का नजर आ रहा है।

और कुछ सैंडल भी रखे हुए हैं।

उसके सामने एक बड़ा सा कूलर रखा हुआ है।

जहां पर बोहोत सारे लोग बोट्स में बैठकर तेहर रहे हैं।

उस पोस्टर में रुद्र सेवा सदन लिखा हुआ है।

इसके अंदर बहोत सारी गाड़िया भी पार्क हैं।

इस पर लखनऊ हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यह चित्र किसी पार्किंग एरिया का लग रहा है।

यह चित्र किसी बड़े से ज्वैलरी शॉप का है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा ब्रिज नजर आ रहा है।

इस चित्र में बोहोत सारे फूल रखें हुए हैं।

यह चित्र किसी बड़े उदघाटन का लग रहा है।

यह चित्र किसी बड़े से ग्राउंड का है।